स्कूल का कॉरिडोर दिख रहा है जहां पे बच्चे हैं जो क्राफ्ट बना रहे हैं और तीन टीचर्स हैं।

बैठे हैं उसमें से एक आदमी के हाथ में की चेन है और वो फोन में बात कर रहा है।

ये एक पार्क है जिसके हमारे सामने एक रायनो का स्टैचू है।

ये एक पार्क है जिसके चारों तरफ पेड है।

ये एक लाल कलर का पोस्ट बॉक्स ऑफिस है जिसमें डेप्थ ऑफ पोस्ट इंडिया ऊपर लिखा हुआ है।

ये एक रास्ते का फोटो है जिसमें ओवर ब्रिज है दो गाड़ी है।